और यह मस्जिद काफी पुरानी है।

और बच्चे बेैठ के पढ़ रहे हेै बच्चो ने काला कोट और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ हेै।